सामने तीन बिल सामने तीन गाड़ियां रखी हुई है एक सिल्वर कलर की एक व्हाइट कलर की बगल में एक टैक्सी रखी हुई है पीछे एक पेड़ लगा हुआ है। चारो तरफ पेड़-पौधे लगे हुए है पीछे कुछ बैनर लगे हुए है।

एक नीरज बुक्स एक के नाम से एक स्टोर लगा हुआ है कुछ कॉपी किताबें रखी हुई हैं कुछ और छतरी तंगी हुई हैं कुछ--

हॉल है उसे पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है कुछ दिनों कुछ और कुछ हॉल हैं जिसमें कुछ खुशियां रखी हुई हैं रेड कलर का हॉल है।

ऊपर ब्लैक और सजावट हो रखी है और पीछे से जो कुर्सियां है वो येलो कलर की दिख रही है आगे से रेड कलर की है पन्नियां चढ़ी हुई है उनपे व्हाइट कलर का सामने प्रोजेक्टर चमक --

है उसमें नीले कलर के गेट लगे हुए हैं नीचे सीमेंट का पुता हुआ है ऊपर एक पंखा लगा हुआ है उसमें हॉल में बाहर अ एक खिड़की दिख रही है और उसमें से हल्की सी रोशनी --